टेबलो पर कुछ समान रखा हुआ है।

आ कुछ टमाटर एक दम लाल है कुछ हरे पन पे नजर आ रहे हैं हरी मिर्चिंयाँ रखी हुई हैं।

आ कुछ पेड़ो पर फूल लगे हैं सफेद रंग के एक किला दिखाई दे रहा है।

आर्टिफीसियल फ्लावर्स लगे हुए हैं।